इन घरो में बहुत सारे लोग रहते हैं और यहाँ बहुत सारी दुकानें भी लगी हुई हैं ।

यहां बहुत सारे लोग इन सामानों को खरीदने के लिए आते हैं और इस दुकान में बहुत ही भीड़ लगी हुई रहती है।